नीले कलर का ई रिक्शा नज़र आ रहा है साइकिल दिख रही है बिल्डिंग में लोगों की कता --

फोटो में हमें एक इमारत नजर आ रही है।

यह प्राचीन संगमरमर की इमारत है।

इस चित्र में हमें एक कमरा नजर आ रहा है।

कमरे में एक टेबल तथा चेयर लगी हुई है।

फोटो में हमें एक ऑफिस का--

कक्ष में तीन विद्यार्थी योगा कर रहे हैं विद्यार्थियों ने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं।